ये एक होटल का फोटो है और यहाँ पर काफी सारे लोग आइसक्रीम खाने आते हैं और यहां पर काफी आइसक्रीम मिलती है और यहां पर कुछ --